इस दृश्य में मुझे एक बड़ी सफेद बस --

यह एक बास का तिरपाल भी मौजूद दिख रहा है एवं--

हरा भरा पौधा भी दिखाई दे रहा है।

एवं ए_सी के बगल में पौधे है।

एवं बहुत सारे अनेक प्रकार के पार्ट्स जमीन में रखे हुए--

जैसे टेप हो गया एवं पेचकस एवं प्लास भी रखे हुए हैं।

इस दृश्य में मुझे एक मैदान में बहुत सारे बच्चों की मनोरंजन के वस्तुएं रखी हुई मौजूद दिख रही--

यह एक शोरूम का दृश्य है जहां बहुत सारे मनुष्य एवं महिला है।

एवं विद्युत से जलता हुआ बल्फ रोशनी दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे अनेक प्रकार के पर्स एवं पैर पोछने वाला नजर आ रहा है।

एवं अनेक प्रकार की वस्तुएं भी रखी हुई है।

खिड़की में अनेक प्रकार की वस्तु तथा कांच की एक खिड़की भी लगी हुई है।

इधर एक फ्रिज भी मौजूद है जिसके ऊपर अनेक वस्तुएं रखी हुई--

एवं काला चश्मा भी पहना हुआ है एवं हाथ में रस्सी भी पहना हुआ है।

इस दृश्य में मुझे एक सैलून दिखाई दे रहा है जहां एक बच्चा बाल कटा रहा है।

तथा एक बच्ची भी बैठी हुई है।

तथा एक व्यक्ति सीढ़ी में बैठा हुआ है।

चार पहिए वाली वाहन भी खड़ी है।

इसपे मकान मेंभी एक बोर्ड गर्ल्स हॉस्टल का लगा हुआ है।

तथा मनुष्य भी चलते हुए नजर आ रहे है।

तथा शोरूम में अलग अलग प्रकार के बोर्ड रखे हुए --